ये जिसका सलून कर रहा है और दरवाजा जो है शीशा का है अंदर में पूरा लाइट साइट ऑन करके है।

आ बिल्डिंग हाल जैसा दिखाकर है उसके अंदर में बड़ा बड़ा --

है फिर उन लोगों का सामने में दीवार है दीवार में ब्राउन कलर का है फिर--

और पीछे में दो ठो छोटा छोटा घर दिखाके है और--

एक सफा वाला जंगल को दिखाके है इसमे अपने लोग भी दिखाके है और--

दूर में और एक छोटा सा घर दिखा के है व्हाइट कलर का और उसके सामने मे घास सफे--

एक अं बॉक्स रखे हैं उसमें कुछ सामान रखे हैं और फिर--

जैसा दिखा के है आगे में तीन ठो बॉक्स बॉक्स करके बनाके है।

डिब्बा है जिसमें एक में फूल लगा के है।

क्योंकि जो शीशा का खिड़की है उसका सामने में छोटा छोटा सामान दिखाके है फिर राइट साइड में--

और राइट साइड वाला में भी रखे हैं जूता फूटा रखे है एक टेबल भी दिख के है और एक सोलर का--